धीरा है यहाँ पे लगता है पेट्रोल पंप बना है यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से ट्रक रखी हुई दिखाई दे रहे है यह पर अच्छे खम्बे दिखाए दे रहे है।

जहाँ पर कुछ कैमेरे लगे हुए हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर अच्छी चिकनी वाली टाइल्स लगी है यहाँ पर कुछ टाइल्स पर कलर पेंट है।

यहाँ पर कुछ लिखा है यम ए_वाई_आई यच डबल एल_पी यहाँ पर देख --